यहाँ पर बहुत सारे बलून भी लगाए गए हैं| इसे देख ऐसा लग रहा है जैसै मानो की आज ही इसका उदघाटन हुआ हो ।

ये तस्वीर एक स्टेडियम का है यहां पे हमें बहुत से लोग खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें यहां दूर से पेड़ और कुछ पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं ये देखने में यह काफी अच्छा लग रहा है।

ऊपर की ओर हमे क्रिस्चियन का होली साइन भी दिखाई दे रहा है। वहीं हम यहाँ गेट के पास एक आदमी को खड़ा देख पा रहे है।

हम एक नदी देख पा रहे है जहाँ हमे बहुत सारे बोट लाइन से लगे हुए देखने को मिल रहे है।

ये कपड़े के दुकान का है यहां हमें बड़े से लेकर छोटे तक के कपड़े देखने को मिल रहे हैं| यहां हमें ऊपर की और पोस्टर भी टंगी हुई दिखाई दे रही है।

देखने में यह काफी अच्छा लग रहा है| आसपास में पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं| यहां हमें एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ भी नजर आ रहा है।

दृश्य एक रास्ते का दृश्य है जहां हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है बिल्डिंग में हमें कुछ दुकान भी देखने को मिल रहे हैं दुकान के ऊपर कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं।